इस तस्वीर मे एक डेयरी दिखाई दे रही है। जिसका नाम आशियाना डेयरी एण्ड स्वीट्स है। इस डेयरी मे --

और सामने कि तरफ बोहोत सारे प्लस के साइन बने हुए हैं और ऊपर की तरफ बोहोत सारे पंखे लगे हुए हैं।

इस तस्वीर मे एक ग्राउन्ड दिखाई दे रहा है। ग्राउन्ड मे सामने की तरफ बहुत सारी बोरियाँ रखी हुई हैं।

का हुआ है और बाउंड्री के पेपर लाइट दिखाई दे रही --